यहां पर एक बहोत ही बड़ा बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है थाना गोमती नगर।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

दुकान के बाहर बहुत बड़ी बड़ी बोरियां भी हैं।

यह एक मैदान है जहां पर कुछ घर बने हुए हैं पास पास में।

यह एक रूम है यहां पर बहुत बड़ा टेबिल है।

कुछ पौधों में फूल भी लगे हुए हैं फूल पीले लाल गुलाबी बैंगनी दिख रहे हैं।

दुकान के ऊपर बहुत सारे पोस्टर भी लगे हैं।

यह एक किचन के जैसा दिखाई दे रहा है।